यहाँ पर कुछ झिंगे टाइप नज़र आ रहे हैं प्लास्टिक में रखे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कई सारे झींगे नज़र आ रहे हैं।

मूर्ति नज़र आ रही हैं औ कोई सारी औरती नज़र आ रही --

यहाँ पर एक गुरुद्वारा में कवच नज़र आ रहा है।

यहाँ मकान नज़र आ रही है यहाँ पर गोल्डन कलर का कवच नज़र आ रहा है।

यहाँ पर एक फोन के शॉप नज़र आ रही है यहाँ पे कई सारे फोन के बैनर लगाए हुए --

या यहाँ पे टी_वी लगाए हुए कैमरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वन प्लस का बैनर है यहाँ पे फोन रखे हुए नज़र आ रहे --

यहाँ पर फ्रूट के शॉप नज़र आ रही हैं यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पे फ्रूटिस भी नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक मंदिर नज़र आ रही है मंदिर में दीवार नज़र आ --

यहाँ पर ऊपर आसमान नज़र आ रहा है नारे के दरख्त नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पे पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पे बैनर लगा हुआ नज़र आ रहा है।

यहाँ पर कार की शोरूम नज़र आ रही है उसको फूलों से डेकोरेट किया है नीचे ब्लू का मैट ल --

उसके पीछे पानी की बोटल नज़र आ रही है।

यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ नज़र आ रहा है ब्लू एंड वाइट डार्क ब्लू बलूनसर --

यहाँ पर एक कप्स की शॉप है यहाँ पर कई सारे कप्स रखे हुए हैं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर --

प्रोडक्टस है यहाँ पे चेयर अन दो चेयर रखी हुई नज़र आ रहे हैं पानी की --

आ रही है हम्म यहाँ पे टिफिन रखा हुआ नज़र --

यहाँ पर एक टमटम नज़र आ रही है टमटम के दो हेडलाइट्स नज़र आ रहे मिरर नज़र आ रहे हैं।

आप एक मोटर से नज़र आ रही है टैंकी नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक होटल है होटल के अंदर --

यहाँ पर एक ऑफिस नज़र आ रहा है ऑफिस के अंदर चेयर रखे हुए हैं टेबल रखे हैं फैन नज़र आ रहा है लाइट नज़र आ रही है बड़ी विंडो नज़र आ रही है।

और दस चीजें हैं ऊपर आसमान नज़र आ रहा है स्कूल की बस रुकी हुई नज़र आ रही है।

रुकी हुई नज़र आ रही है दरख्त नजर आ रहे हैं।

लाइट क्रीम कलर है नीचे ब्लू कलर कार्पेट बिछाया--

अच्छे से उसको उसका शेप किया हुआ नजर आ रहा है.

डोर नज़र आ रहे है विंडो नज़र आ रहे है उसके ऊपर झंडा लगाया हुआ नज़र आ रहाहै।

और यहाँ पे लोग डांस करते नज़र आ रहे है लाइटिंग वायटिंग डिस्को --

नज़र आ रहे है वायर नज़र आ रहे है आसपास लाइट्स नज़र आ रहे है लोग नज़र आ रहे है यहाँ पर बिल्डिंग नज़र आ रही है.

देवे नजर आ रहे हैं दरख्त नजर आ रहे है--.

तालाब नजर आ रहा है तालाब में लोग बोट में सवार कर रहे हैं.

शॉप के अंदर बॉक्सेस में कई सारी चीजें रखी नज़र आ रही है.

बिठाए हुए हैं बच्चे हुए हैं कुछ लोग ठहरे हुए हैं कुछ ऊपर देख के अंदर से झाक रहे हैं कुछ लेडी वहां कुछ बता रही है बच्चों को--

छोटे पॉट्स नजर आ रहे हैं घर में ब्लू कलर के कुर्ता पर--

एक डॉक्टर का केबिन नजर आ रहा है उसके अंदर कई सारेिक चीजें रखा है नजर आ रहा है--

यहां पर जो लेडी है लेडी नृत्य डांस कर रहे हैं और साड़ी पहने हुए हैं बालों में गजरा लगाए हुए हैं।

यहां पर छोटे-छोटे दरख्त भी नजर आ रहे हैं ऊपर फैक्ट्री की जगह पर जाने के लिए सड़ियां नजर आ रही है।

यहां पर फैक्ट्री का काम नजर आ रहे हैं जहां जाने के लिए--

यहाँ सब तरह रोजेज है और यहाँ पे--

आसमान साफ है और एक रेलवे दिखती है यहाँ पे--

सबसे अच्छे से नजर आ रही है यहां पर--

फेशियल क्रीम सब नजर आ रही है।